और यहाँ पे और भी बड़े-बड़े पेड़ भी है जो बहुत प्यारे है उनका कलर भी ग्रीन है।

और ब्लैक कलर के गेट लगे हुए हैं जहाँ से सीधा अंदर जाने का रास्ता है और सामने कुछ लोग भी खड़े हैं।

और इधर एक शटर है जिसमे ब्लैक कलर का पेंट है और सामने फ्लोर है जहाँ पर पानी है।